और रात का ये सीन है पीछे अंधेरे में कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत बड़ा बोर्ड भी दिखाई नजर आ रहा है यहाँ पर इस पर लिखा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।

और काफी सारी लाइटें भी ऊपर दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे देखो यहाँ पे काफी सारे बड़े-बड़े अशोक के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे देखिएगा बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है काफी बड़ा मैदान है।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

ऊपर देखिएगा लाइटिंग से सजा हुआ है ये साइड में पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति जो कि ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बाइक्स खड़ी हुई हैं।

और खिड़की कांच की खिड़की दिखाई दे रही है काफी सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं कुछ पुरुष भी नजर आ रहे हैं।

काफी सारे लोग यहाँ पर देखिएगा फुटबॉल खेल रखे खेल खेल रहे हैं एक फुटबॉल दिखाई दे रही है।

तीन लड़कों ने सफेद कलर की टी-शर्ट और तीन लड़कों ने पीले कलर की टी-शर्ट हरे कलर की टीशर्ट पहन रखी है।

यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पे लिखा हुआ है मूमताज कृषि।

फूल उग रहे हैं काफी सारे फूल के पौधे दिखाई दे रहे हैं लाल लाल कलर के फूल उग रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कीर्ति योगा।

पियानो पियानो वो से बोलते हैं पर म्यूजिक पियानो दिखाई दे रहा है।

और सामने बोर्ड भी दिखाई दे रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और सामने की तरफ मैदान दिखाई दे रहा है हरे हरे घासों से भरा हुआ।